इस पिक्चर में एक ग्राम पंचायत भवन है जोकि सूप गाँव गाँव में है और एक उसमें नीले कलर का गेट लगा है जिसका ताला लगा हुआ है।

और इसमें बहुत सारी स्कूटी और बहुत सारि गाड़ियाँ खड़ी है।

और पासपास बहुत सारे पेड़ लगे हुए है एक वाइट कलर का खंबा भी लगा है और इसमें एक आदमी --

इस पिक्चर में तीन गाड़ियाँ खड़ी हुई है जिसमें से एक ब्लू एक रेड कलर की है।

इस पिक्चर में एक एयरटेल ऑफिस बना हुआ है जिसके बहार पोस्ट पेड़ नाम का एक स्टीकर लगा हुआ है।